और एक पर्दा दिखई दे रहा है जिसमे कुछ दिखई दे रहे है और--

दिखाई दे रही है रोड मे काफी सारा काफी सारा पार्किंग एरिया दिखाई दे रहा है जो रेलिंग दिखाई दे रही है बिल्कुल काली दिखाई दे--

और कुछ डब्बे और कुछ सामान दिखाई दे रहा है कुछ पैकेट दिखाई दे रहे है और कुछ बिस्किट के पैकेट दिखाई देते हुए नजर आ--

एक जिम है जिम मे काफी सारे इंस्ट्रमेंट रखे हुए है और भी रखे हुए है।

दीखाई दे रहै है टार्ज़ दो फुट के दीखाई दे रहै है और एक बोर्ड दिखई दे रहा है जिसमे एक बट्टन दिखई देती हुई नज़र आ रही है।

और सामने एक एल_डी टी_वी लगी हुई है और ऊपर कुछ लाइटिंग लगी हुई है और कुछ खिड़कियाँ भी दिखाई दे रही है ऊपर कुछ लाइटिंग दिखाई दे रही है।

एक ब्लैक बोर्ड है जिसमे एक कुल्हाड़ी का चित्र बना हुआ है एक टंगिया लिखा हुआ है एक बालम लिखा-बालम लिखा हुआ है।

मतलब काफ़ी सारे भाला और ये सब का चित्र बने हुए दिखाई देते हुए नजर आ रहे है।